इसमें रेड कलर की टाइल लगी हुई हैं।

सामने कमरा है कमरे का गेट खुला हुआ है।

पीले कलर की हरे कलर की लकड़ी इस्तमाल हुई है जिसमें बीच में टूटा हुआ --

सामने टेंट सजा हुआ है टेंट का कलर लाल नीला गुलाबी पीला ऊपर की साइड में मालाएं बनी हुई हैं।